और साम बाहर कुछ बाइक वगैरा और स्कूटीएस खड़ी हुई है।

और जिसके में कुछ बेंच वगैरा रखी हुई है टेबल बेंच रखी हुई है।

यहाँ पर एक शिला रखी हुई है पत्थर की शिला रखी हुई है।

और जो कि ग्रीन कलर की चेयर हैओ सारे सिस्टम लगे--

अ बड़े-बड़े पत्थरों की चट्टानों की पहाड़ियाँ बनी हुई है बड़ी-बड़ी--

और अ नदी के बीच में कुछ यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है बड़ा -सा ब्रिज बना हुआ हैं।

यहाँ पर कुछ स्लाइडेड पट्टी लगी हुई है।

पॉट रखे है प्लांट पॉट रखे हुए है।

बहोत सारे यहाँ पर पेन पेंसिलस का कलर्स टंगे हुए है जिस पर डोम्स लिखा हुआ--

और इसमें कुछ यात्री बैठे हुए है ट्रैन मे--

एक एला लाइट लैंप लगा हुआ है।

थैंक यू कर के एक बड़ा सा गेट है।

यहाँ पर और कुछ आ आर्ट किया हुआ है आर्ट पेंट --

जिसमे यहाँ पे मछलियों की दुकाने है फिशेस की दुकानें लगी हुई है।

और जिस के बाहर एक फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है एक कार खड़ी हुई है।